किचन बहोत ही बड़ा है और बहोत ही सुंदर लग रहा है।

पार्क के बाहर येलो कलर और रेड कलर का गेट है।

हम देख सकते हैं इस चित्र में एक दुकान दिखाई गई है जिसमें जुते हैं।

और बाइक और साइकिल भी खड़ी है।

यहां रेड कलर के और येलो कलर के डब्बे रखे हुए हैं।

रेस्टोरेंट में कई कुर्सियां लगी हुई हैं।

और कई लोग यहां बैठे हुए हैं।

जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों ने ब्लू कलर की ड्रेस --

इस चित्र में पीले कलर के फूल दिखाएं गए हैं।

चर्च के बाहर गेट पर ब्लू और वाइट कलर के बलून्स का डेकोरेशन किया गया है।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि फूल दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि झरना बह रहा है और--

दुकान के बाहर दो गाड़ियां भी खड़ी है।

और ऑफिस में बलून का डेकोरेशन --

स्टेशनरी की दुकान पर बैठा हुआ है।

एक अह घर दिखाया गया है जिसमें कई--